भजन कीर्तन कर रहे हैं फर्श मार्बल से बना हुआ है।

इस फोटो में आप जैन हॉस्पिटल देख सकते हैं।

इस फोटो में आप पहाड़ों के बीच का दृश्य देख सकते हैं।

चट्टानों से गुजरता हुआ पानी शायद--

और एक या दो लोग एंजॉय कर रहे हैं।

काफी पब्लिक यहां खाने के लिए बैठी है सामने कांच का दरवाजा है।

फोटो में आप मिनी सचिवालय मिनी सेक्रेटेरिएट का ऑफिस देख सकते हैं।

फोटो में आप एक लाइब्रेरी देख सकते हैं।

इस फोटो मे आप एक बिल्डिंग के अंदर नीचे की तरफ --

इस फोटो में आप एच_डी_एफ_सी का साइन देख सकते हैं।

इस फोटो में आप ब्रम्हा जी का ब्रम्ह राम मंदिर देख सकते हैं।

यहां पर एक बच्चा अपने बाल कटवा रहा है।

बाहर घास का मैदान है जहां प--

ठेले वगैरा लगे हुए हैं सब्जी के--